इस इमेज के अंदर एक कमरा दिखाई दे रहा है ज उ --

चादर आगे जाके दीवार से चिपका कर बिछाई गई है।

ऊपर एक घड़ी टंगी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें एक लड़की फिसलते हुए नीचे आई हुई बैठी हुई है।

ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है जिस --

इस दुकान के आगे एक ब्लैक कलर की उम्म मोटर बाइक दिखाई दे रही है तथा --

उसके ऊपर पाँच ग्लास दिखाई दे रहें हैं।

जहॉ पे वो बुसेस की एक लंबी लाइन दिखाई दे --

कुछ ट्रॉफ़ीयाँ नीचे रखी हैं जो --

और रेड कलर का दुपट्टा बांधा हुआ है।

एक अनार पुरी ऊँचाई तक फूटता हुआ दिख रहा है।

के अंदर बहुत सारी टेबल और बेंचेस रखी हुई हैं।

ये कंस्ट्रक्शन की साइट दिख रही है ।